इसमें मुझे नगर पालिका निगम कटनी दिख रहा है।

इसमें मुझे एक हॉल दिख रहा है।

इसमें मुझे बहुत सारे बादल दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बाइक्स ऑटो दिख रही है।

इसके अन्दर मुझे बहोत सारे टॉयज और बुक्स दिख रही है।

इसके अंदर मुझे बहोत सारे लोग सामान लेते दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक सजी हुई सोसाइटी दिख रही है।

इसमें मुझे लोहे का बहोत सारा समान दिख रहा है।

इसमें मुझे ट्रौच में बहोत सारी बुक्स जमी दिख रही है।

इसमें मुझे ड्राच के ऊपर रखा हुआ दो पृथ्वी का गोला दिख रहा है।

मैदान मे मुझे चारों साइड बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।